देख सकते हैं यहाँ पर जिम है जिम में बहुत सारे लड़के अपना काम अ जिम कर रहे हैं।

हम देख सकते है की तीन चार आदमी है जो मजदूरी का काम कर रहे है यहाँ पर कुछ अ काम हो रहा है।